साड़ी रखी गई है जो एकदम फोल्ड करके रखी गई है।

मुझे इस फोटो में एक होम ट्रेडर्स नाम की एक दुकान दिखाई दे रही है।

चेयर पर एक आदमी बैठा हुआ है वह मैनेजर प्रतीत होता है।

और पेट्रोल टंकी पर कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है।

मुझे एक चित्र दिख रहा है इस चित्र में--

एक खिड़की और एक आलमारी दिखाई दे रही है।

मु मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा है इस चित्र में--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

इस दुकान में कपड़े टंगे हैं और एक कुछ व्यक्ति खरीदारी कर रहे हैं।

सूर्य की लालिमा दिखाई दे रही है आसमान एकदम लाल कलर का दिखाई दे रहा है और--

बहोत दूर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा हैं।

चारो तरफ दिवाले हैं एक दीवाल नीली कलर की है।

जैसे छेना का रसगुल्ला और काला जाम भी रखा गया है।

एक हाथ दिखाई दे रहा है जिस पर एक गले का हार और काने की बाली--

और उनके सामने उनके शिक्षक भी खड़े हैं सामने--